यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो के बारे में है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
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो क्या है यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो में उपलब्ध विभिन्न ऑप्शन्स कौन से हैं और यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो का उपयोग करके ब्लेंडर इंटरफ़ेस को कस्टमाइज कैसे करें
मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफ़ेस के बेसिक एलिमेन्ट्स के बारे में जानते हैं
यदि नहीं तो कृपया हमारा पहला ट्यूटोरियल देखें
बेसिक डिस्क्रिप्शन ओएफ थे ब्लेंडर इंटरफेस ब्लेंडर इंटरफ़ेस के ऊपरी बाएँ कोने में फाइल पर जाएँ
फ़ाइल खोलने के लिए बायाँ क्लिक करें
यहाँ ऑप्शन्स की सूची है जो पहले से ही फ़ाइल ब्राउज़र और इन्फो पैनल के ट्यूटोरियल में समझाए गये हैं
यूजर प्रेफरेंस चुनें
कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए Ctrl Alt और उ दबाएँ
यह यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो है
यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो के ऊपरी बाएँ कोने में इंटरफेस पर जाएँ
इसमें ब्लेंडर इंटरफ़ेस को कस्टमाइज करने के लिए कई ऑप्शन्स हैं
बुनियादी आवश्यक ऑप्शन्स पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय हैं
डिस्प्ले मिनी एक्सिस 3डी व्यू के निचले बाएँ कोने में मौजूद मिनी ऐक्सिस के साइज को नियंत्रित करता है
डिफ़ॉल्ट साइज 25 है
मैं ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स श्रृंखला में बेहतर देखने के लिए साइज 60 का उपयोग कर रहा हूँ
अब मैं दिखाता हूँ
यूजर प्रेफरेंस विंडो बंद करें
3डी व्यू के निचले बाएँ कोने में हम मिनी ऐक्सिस देख सकते हैं
मिनी ऐक्सिस ब्लेंडर में 3डी स्पेस के ग्लोबल ट्रान्सफॉर्म ऐक्सिस का प्रतिनिधित्व करता है
ब्लेंडर में एनिमेट करते समय यह उपयोगी है
हम ग्लोबल और लोकल ट्रान्सफॉर्म ऐक्सिस के बारे में बाद के ट्यूटोरियल्स में विस्तार से चर्चा करेंगे
यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो खोलने के लिए Ctrl Alt और उ दबाएँ
रोटेट अराउंड सिलेक्शन सक्रिय करें
यह आपको चुनित ऑब्जेक्ट के केंद्र के चारों ओर घूमने के लिए सक्षम बनाता है
देखते हैं इसका अर्थ क्या है
यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो बंद करें
3डी व्यू में लैम्प पर दायाँ क्लिक करें
माउस व्हील या बीच के माउस बटन को दबाएँ और पकड़कर रखें तथा अपना माउस घुमाएँ
हम चुनित ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहे हैं
उसी प्रकार कैमेरा पर दायाँ क्लिक करें
माउस व्हील या बीच के माउस बटन को दबाएँ और पकड़कर रखें और अपना माउस घुमाएँ
अब हम कैमरे के आसपास घूम रहे हैं
यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो खोलने के लिए Ctrl Alt और उ दबाएँ
एडिटिंग पर बायाँ क्लिक करें
इसमें पैरामीटर्स हैं जो ऑब्जेक्ट एडिटिंग मोड या एडिट मोड में ब्लेंडर के व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं
फिर से बुनियादी ऑप्शन्स पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय हो गये हैं
ग्लोबल उंडो अंडू स्टेप्स की संख्या को बढ़ाता और घटाता है जो एडिटिंग करते समय आवश्यक हो सकती है
इनपुट पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ हम ब्लेंडर में उपयोगित सभी कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं
इम्यूलेट 3 बटन माउस ब्लेंडर में आपके 2 बटन माउस को 3 बटन माउस का अनुकरण करवाएगा
सिलेक्ट विथ आपके माउस का चुनाव ऑप्शन दाएँ से बाएँ बदल सकता है
यह बाएँ हाथ के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है
इम्यूलेट नमपैड आपके कीबोर्ड पर नंबर कीज बनायेगा जो ब्लेंडर में नमपैड कीज की तरह व्यवहार करेंगे
यह लैपटॉप उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है जिनके कीबोर्ड पर अलग नमपैड नहीं हैं
add ओन्स पर बायाँ क्लिक करें
यह ब्लेंडर में एक प्लग इन्स सूची रखता है
इनेबल्ड पर बायाँ क्लिक करें
कुछ प्लग इन्स डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय हो गये हैं
अन्य प्लग इन्स संबंधित वेबसाइट से संस्थापित किए जा सकते हैं
उदाहरणस्वरूप बादलों को बनाने के लिए एक प्लग इन संस्थापित करें
ऑब्जेक्ट पर बायाँ क्लिक करें
ऑब्जेक्ट के आगे अगले त्रिकोण क्लाउड जनरेटर पर बायाँ क्लिक करें
लिंक टो विकी पर बायाँ क्लिक करें
यह लिंक हमारे इंटरनेट ब्राउज़र पर एक वेब पेज़ खोलता है
मैं फ़ायरफॉक्स 309 इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग कर रहा हूँ
यहाँ हम ब्लेंडर के लिए क्लाउड जनरेटर प्लग इन डाउनलोड और संस्थापित कर सकते हैं
इस पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों का पालन करें
यहाँ दिखाए गये स्टेप्स सभी इंटरनेट ब्राउज़र्स में समान हैं
थीम पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ आप ब्लेंडर इंटरफ़ेस के प्रत्येक पैनल का रंग बदल सकते हैं
उदाहरणस्वरूप टाइमलाइन पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ आप वर्तमान फ्रेम इंडिकेटर ग्रिड और साथ ही अन्य सभी एट्रिब्यूट्स का रंग देख सकते हैं
करेंट फ्रेम के आगे ग्रीन बार पर बायाँ क्लिक करें
यह ब्लेंडर में कलर मोड विंडो है
यहाँ हर क्षेत्र पर सफेद डॉट करेंट फ्रेम इंडिकेटर के रंग को नियंत्रित करता है
मैं इसे लाल रंग में बदलने जा रहा हूँ
व्हाइट डॉट पर बायाँ क्लिक करें अपना माउस पकड़कर रखें और लाल क्षेत्र की ओर ड्रैग करें
बायाँ क्लिक छोड दें
ध्यान दें कि आरजीबी की वेल्यू कैसे बदल गयी है
इसी तरह हम अन्य सूचीबद्ध ऑप्शन्स के रंग भी बदल सकते हैं
फाइल पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ हम हमारे सिस्टम पर फोंट्स टेक्सचर्स प्लगइंस रेंडर आउटपुट स्क्रिप्ट्स साउंड्स आदि का स्थान निर्धारित कर सकते हैं
फ़ॉन्ट्स के लिए स्थान निर्धारित करें
पहले रेक्टेंगल बार के दायीं ओर के आखिरी में फाइल आइकन पर बायाँ क्लिक करें
फाइल ब्राउजर खुलता है
डिफ़ॉल्ट रूप से हम लोकल सी ड्राइव डाइरेक्टरी में हैं
विंडोज डायरेक्ट्री पर बायाँ क्लिक करें
फोंट्स पर जाएँ
स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने में एक्सेप्ट पर बायाँ क्लिक करें
पहले रेक्टेंगल बार पर एक पाथ प्रदर्शित होता है
ब्लेंडर अब जानता है कि अपने सिस्टम पर फॉन्ट्स कहाँ देखें
इसी तरह दूसरे रेक्टेंगल बार के दायीं ओर के आखिरी में फाइल आइकन पर बायाँ क्लिक करें
फिरसे फाइल ब्राउजर खुलता है
अब हम अपने सिस्टम पर टेक्सचर्स के लिए स्थान निर्धारित कर सकते हैं जैसे हमने फोंट्स के लिए किया था
क्या होगा यदि मैं टेक्सचर्स के लिए बिना स्थान चुनें इस फ़ाइल ब्राउज़र से बाहर निकलना चाहता हूँ
यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो पर लौटने के लिए स्क्रीन के ऊपर हेल्प के आगे बैक टो प्रीवियस पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ दूसरे रेक्टेंगल बार पर कोई पाथ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने कोई चुना नहीं था
सिस्टम पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ हम जिस कंप्यूटर का प्रयोग कर हैं उसकी प्रोपर्टिज के अनुसार ब्लेंडर सेटिंग्स कस्टमाइज कर सकते हैं
ब्लेंडर में डिस्प्ले के लिए डीपीआई फ़ॉन्ट साइज और रेज़लूशन बदलता है
ब्लेंडर में डिफ़ॉल्ट डीपीआई 72 है
ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स श्रृंखला में बेहतर देखने के उद्देश्य से मैं DPI90 का उपयोग कर रहा हूँ
निचले बाएं कोने में सेव एएस डिफॉल्ट का उपयोग ब्लेंडर इंटरफ़ेस में अपने कस्टमाइज्ड परिवर्तन सेव करने के लिए किया है
कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए Ctrl और उ दबाएँ
अतः यह यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो के बारे में बुनियादी जानकारी थी
इनके अलावा यहाँ यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो में अन्य ऑप्शन्स मौजूद हैं जिनके बारे में बाद के ट्यूटोरियल्स में चर्चा की जाएगी
अब कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके ब्लेंडर में यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो खोलने की कोशिश करें
फिर रोटेट अराउंड सिलेक्शन का उपयोग करके 3डी व्यू में क्यूब को रोटेशन का केंद्र बनाएँ
ब्लेंडर के लिए क्लाउड जनरेटर plug इन संस्थापित करें
टाइमलाइन में करेंट फ्रेम इंडिकेटर का रंग बदलें और अपने कंप्यूटर पर रेंडर आउटपुट के लिए स्थान निर्धारित करें
और यह यूज़र प्रिफ्रेरेंसेस विंडो के इस ट्यूटोरियल को पूर्ण करता है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
इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक्स पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद